यहाँ सामने कुछ महिलाए योग करती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने एक बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ छोटी-छोटी बच्चीयां लाइन से बेठी हुई अपना काम करते हुये दिखाई दे रही हैं। बच्चे बच्चीयां अपना काम बड़ी लगन से कर रही हैं और एक दूसरे का वर्क भी देख रही हैं।

यहाँ सामने मकान का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लग काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

बस के बाहर एक आदमी की शर्ट पहने खड़ा है जो बस की तरफ देख रहा है।